फूल के गुछे यानि बहुत कुछ पौधे देखो यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं यहाँ सब इधर उधर लगाने के लिए बहुत अच्छा हैं यहां पर--

ऊपर एक अलमारी है अलमारी के साइड में एक गो जग रखा हुआ हैं कि उसमें जग में क्या हैं कि पता नही लेकिन साइड में दो गो बोतल हैं और ए.सी. रूम बहुत बढ़िया रूम हैं कि देखने में इतना मजा रूम हैं कि यह अलमारी भी देखने में मस्त लग रहा है। वा! वा!

यहाँ है चिड़िया हैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हैं देखने में बहुत अच्छा सुंन्दर सा दिख रहा हैं उसके आगे मुंडी में एक रेड कलर का छोटी सी पतली सी--

शायद इ लड़का नही अच्छा से रेट नहीं नहीं दे रहा होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा कस्टमर ।